मौसम भी बहोत अच्छा दिख रहा है।

इसका डिज़ाइन रेड और वाईट में किया गया है। ये चर्च के ऊपर बड़ा सा प्लस भी ऊपर देखा जा सकता है। मौसम भी बोहोत साफ़ दिख रहा है। चर्च के बोर्ड के ऊपर लिखा है चर्च ऑफ़ क्रिस्ट ।

ब्लू वाइट किसी के साथ जाते हुए दिख रहा है।

यहाँ पे मुझे एक बड़ी सी फैक्ट्री दिख रही है जिसका कलर व्हाइट और ब्लू में डिज़ाइन करा गया है। यहां पे फैक्ट्री के बाहर बहोत सारे लोग आते जाते भी देखे जा सकते हैं।

इस जगह पर मुझे चार चार तरह का पानी की बाल्टी दिख रही है। ये बहोत ही लोहे की बाल्टी जैसी दिख रही है इसमें से मच्छी को धोया जा रहा है। ये मच्छी शेर की दुकान लग रही है। यहाँ पे बेट बहोत सारे लोग मच्छी बेचते हुए देखे जा सकते हैं।

ये एक पानी के ऊपर दिए जलाके पानी में छोड़ दिया जाता है और मुझे साइड में एक कार्टून जैसा भी कुछ फैक्ट्री भी दिख रहा है। ये एक एडिट हुई हुई फोटो भी लग रही है।

सामने की तरफ एक माह बेहता हुआ पानी भी दिख रहा है जो कि एक सीधी लाइन में बेहता हुआ पानी दिख रहा है जिसका कलर --

बड़ा सा फौवारा देखा जा सकता है जिसके नीचे बहोत सारी लाइटे भी लगी हुई है हालाँकि ये सुबह का फोटो दिख रहा है।

फौवारा दिख रहा है। यहाँ मेरे सामने चार फौवारे पानी को फेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे लाइटिंग भी करी गयी है।

बहोत सारी मच्छी बेच बेचते हुए लोग देख रहे हैं। यहाँ पे बहोत सारे लोग मच्छी बेच रहे हैं। यहाँ पे बहोत अलग-अलग तरह की मछली दिख रही है जहाँ --

बहोत सारे मेरे को पुराने बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है। यहां पे नीचे जाते हुए जगह भी दिखाई दे रही है और बहोत सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।